और यहाँ पर एक गाड़ी खरी खड़ी हुई है।

यहाँ गाडी सड़क के किनारे एक--

यहां पर बहुत सारे लोग थियेटर देखने के लिए आए हैं।

दुकान है वह दुकान बंगाल है।

और बुजुर्ग कहीं पर जा रहे है।

यह एक रोड है जो रोड में पानी भर गया हैं।

सामने एक पत्थर है पत्थर में बहुत ही बड़ा है।

पुरुष है यहाँ पर पुरूष औरत को चाबी दे री हैं।

माल भईया कुछ दे रहै हैं आदमी को यहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई है शायद भईया की होगी--

जड़ को ढ़क रहै है और यह पौधा बहोत ही बड़ा है।

यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते होंगे।

यहाँ एक टावर है और इसी के जरिए से इंटरनेट चलता है इसमें बहुत सारे --

यह किताब बच्चों को पढ़ने मे मदद मिलता हैं।

कस्टमर हैं जो दुकान में बसा हैं।

सफेद कलर के कपड़े पहने--

यह मछली खाने में बहुत ही--

और ये एक के ऊपर एक के ऊपर रखा गया है जो काफी खूबसूरत दिख रहे है एक गिलास बड़े आकार का है।